सामने सफ़ेद खड़ी हुई एक बड़ी सी कार हम देख पा रहे है। जिसके चारो दर चारो दरवजा खुले हुए हैं। इसको बहोत अच्छी तरीके से फूलो से सजाया गया है।

यहाँ पर हम लाल नीला और पीले कलर का फूल ज्यादा देख पा रहे हैं। एक बच्चा खड़ा हुआ है दरवाजे के पास पीछे हम बहोत सारी दुकान खुली हुई देख पा रहे हैं।

और हरे कलर के--

पीछे पीले कलर के द बोहोत सारे फुल देख पा रहे हम।

हम एक कॉफ़ी शॉप देख पा रहे हैं जहाँ पर कुर्सियाँ टेबले रखी हुई हैं। लोहे का एक कोलॅप्सिबल गेट सटा दिख रहा है सामने तीन आदमी जो बेंच पर बैठे हुए हैं। एक साथ कुछ खा रहे हैं।